इलाका का लोग इस बुक स्टॉल से पढ़ने का सामान खरीदता है।

इस दफ्तर के सामने एक रविंद्र नाथ ठाकुर का स्टैच्यू भी है।

ये एक सुंदर सा वेनू है इस वेन्यू के अंदर बैठने के लिए बहोत सारे सोफे भी है।

यहाँ पर इन्स्टॉल्मेन्ट और कैश मे टोटो मिलता हैं।

ए हमारा इलाका का एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है।

इस कोचिंग सेंटर में कॉपरेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है।